और ऊपर बादल भी बहुत अच्छे है सफ़ेद रंग के है काले रंग के है और नीचे रोड बना हुआ है ।

ये एक दुकान है | यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत सारे पंखे भी है लाइट भी बहुत सारी लगी हुई है और सामने एक --

यहाँ बहुत ही सुनसान जगह है काले रंग का रोड है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की लाइन है और बहुत सारे अलग अलग जाड़ है।

ये एक सैलून है यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दाढ़ी बना रहा है और नीले रंग की कुर्सी है।

बड़ा-सा झाड़ है हरे रंग का ऊपर अ नीले रंग का आसमान है और साइड में लाइट की वायरिंग लगी हुई है।

हां बहुत छोटी छोटी घास है हरे रंग की और सामने बहुत बड़े-बड़े झाड़ है और एक सामने छोटा-सा घर भी है ।

सामने एक ऑफिस है ऑफिस के बाहर लाल रंग का बोर्ड है बोर्ड पे मनोहरलाल प्रसाद लिखा है और ऑफिस के बाहर एक --

सामने एक एक्स-रे रूम है जिस रूम का नंबर अठारह है और उसके ऊपर एक छोटा-सा बल्ब है लाल कलर का उसके ऊपर एक खिड़की भी है।

टेस्ट चालू है सामने एक नेट जाली लगायी हुई है और उसके पीछे एक घर है यहाँ लोग काम कर रहे है।

एक लड़की को टॉफी दे रहे हैं और यहाँ एक काले कलर की टेबल है टेबल के ऊपर दो पानी की बोतल है।

और उस डब्बे के पीछे एक मिरर लगा हुआ है अ उस आईने में एक बहुत सारा समान दिख रहा है।

यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है और नीचे नीले रंग की पेंट पहनी हुई है।

यहाँ एक रोड है रोड के साइड में और बीच में छोटे-छोटे झाड़ है और उस रोड के उस साइड --

ये एक दूकान है दूकान का रंग अ पीला रंग है और उसका दरवाजा काँच का है।

सजावट की हुई है और बाहर बहुत सारे कैंडल लगाए हुए है।

और उसके पीछे चॉकलेटी रंग का बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं खिडकियाँ हैं।

यहाँ एक मदिर है मंदिर के ओ मंदिर की छत लाल रंग की है और बाहर सीढियाँ है और उसके नीचे अ मिट्टी --